खिलौने इत्यादि यहाँ पे रखे गए हैं। ये अअअ भगवान का फूल रजिस्टर फोटो आदि बिकती है।

यह एक प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड ये फुटबॉल प्लेग्राउंड है ये है गोल कीपर ।

यहाँ पे आई.सी.आई.सी.आई बैंक का ए.टी.एम. है बगल में एच.डी.एफ.सी. का भी ए.टी.एम. है।

उसको तोड़ कर के निकाला गया है। ये अम ये मरम्मत के लिए रखा गया है और आगे का बोनट इस बोनट हटाया गया है। अन्दर का सामान दिख रहा है कार का।

और यह एक अअअ रेल का प्लेटफार्म है जहाँ पे यह रेल है। इसमें उपर से ट्रेनें चल रही है चलती है दोड़ती है।

वो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। सामने एक रोड है जिसमे हेलमेट पेहेन के वो लोग बाइक चला रहे हैं वो दिख रहा है।

ये परिवार कल्याण संस्थान जो पटना का ये ऑफिस है यहाँ पे बहोत सारे लोग आए हुए हैं अपना --